और यहां पर गाड़िए भी खड़ी हुई है। सामने आदमी भी जा रहे हैं और इसका गेट बोहोत ही प्यारा लग रहा है। ये बोहोत ही बड़ा रहता है। यहाँ पर बोहोत ही दूर-दूर से शादिये करवाने आते हैं।

ये एक जिम का सामान है जो कि बोहोत प्यारा लग रहा है। यहाँ पर साइकिल वगैरा की रखी है जिम वगैरा की। एक कुर्सी भी पड़ी है और साइड में एक ब्ब् बोहोत ही बड़ा गद्दा है जोकि बोहोत प्यारा लग रहा है। इनका कलर चॉकलेटी है।

ये एक स्टेज पर लोग परफॉर्म करते है और बहोत ही बढ़िया है और इन कुर्सियों का कलर लाल है।